आसमान दिखाई दे रहा हे स्वास्थ्य केंद्र की दीवारें पीले रंग से पुती हुई है सामने लाल मिट्टी का फर्श दिखाई दे रहा है।